इसमें बहोत सारी चिट्ठी लखी हुई है।

और यहां पर बहोत सारे कपड़े हैं।

ये एक ऑफिस है।

इस पिक्चर में हमें दिख रहा है।

एक बैंक दिख रहा है।

बड़ा घर है और--